ईटे लाद कर ले रहा है और एक बाइक खड़ी हुई हैं घर के सामने घर को अभी रंग लगाया नहीं गया हैं।

बीच में एक लड़की बैठी हुई है जो कि कागज काट रही है।

चौबिस घंटे ये देखते है मरीजों को इसके बाहर क्लिनिक के बाहर एक गाड़ी रखी गई है मोटर बाईक काले रंग की है।

चर्च की ऊपर की छवि दिख रही है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा हुआ है छत के ऊपर का एरिया ब्राउन कलर का है।